और एक लाल रंग का टीना दिखाया गया है जो एक दीवार के उपर हैं।

बोर्ड है रेड कलर का।

चेयर रखा हुआ है दो कलर का येलो और रेड ।

और गैरेज जैसा भी है और वहां में एक गाड़ी स्कूटी खड़ा हुआ है।

ये एक बाजार है लगता है जहां में पत्ता भी है पत्ता सब्जी सब बेच रहा है।